है और कुछ बहुत रंग बिरंगे के खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे है।

है यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे है।

और वे बहुत हरे भरे हैं और पीछे मुझे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक भवन दिखाई दे रहा है।

यहां पर चल रही है जो पिंक कलर की है।

जो चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक शॉप दिखा--

हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।